इस बिल्डिग के बगल में एक दुकान है यह गेट के ऊपर एक पोस्टर लगा है जिसे ब्लू कलर का है कुछ रेड कलर का भी है यहाँ--

दीवाल दिखाई दे रही है कुछ कांच की खिड़कियां दिखाई दे रही है एक फैन दिखाई दे रहा है एक पर्दे दिखाई दे रहे है जो व्हाइट कलर के है नीचे गद्दे दिखाई दे रहे है।

वाइट कलर की मस्जिद है यह दीवाल भी वाइट कलर की है यहाँ आसपास बहुत सारे मकान हैं।

एक लेडीजस खड़ी हुई है एक जेंट्स खडे हुए है एक ऊंट है एक मूर्ति है और इस बिल्डिंग पर उत्सव लिखा हुआ हैं।

बिल्डिंग दिख रही है मैरून कलर की है सलेटी कलर की भी है इसमें चार पाँच छे खिड़की लगी --

जहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं।

कुछ लड़के आते-जाते दिखाई दे रहे है। एक आदमी बाइक से निकलते हुए रोड से दिखाई दे रहा है। यहाँ एक पोस्टर लगा हु --

यहाँ एक मस्जिद दिखाई दे रही है जो सीढ़िया मस्जिद की ओर गयी है यहाँ एक पिली कलर की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही।